और फ्रिज वगैरा भी है.

और एक लकड़ी का कुर्सी है.

और इधर कोंटर है.

एक इस्कूटी लगाया हुआ हे दो मोटरसाइकिल हे.

ओर ईटा वगैरा भी है और एक आदमी दिखाएं दे

और एक आधे लइका साइकिल चला रहा है और इधर अम्-मैच खेला जा रहा है.

एक बहुत ही बड़ा तीन तल्ला मकान है।

और बाकी पेड़ है बगल बगल में और ऊपर में कुछ हरा रंग के डाला हुआ है.

ओर इस्टील का से घा घाथा मार दिया गया है.

और ये रोड हे जोकि जा रहा हे और इस साइड दिवाल पर कुछ पीला मे छापा हुआ हे.

जो की देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फील्ड है जो की पानी भरा हुआ है।

जरा मकान है। और टेंपु चला रहे भाईसाब --

और एक झोला भी नजर आ रहा है.

जो की एक तीन तल्ला मकान है जो की हता मार दिया गया है और ऊपर में कुछ सजाया गया है।

और कोई चीज का पेड़ है और ढेर सारा पेड़ है उस साइड --

और आगे आरी आरी बांस का घेरावा कर दिया गया है.

ढेर सारा आदमीन है और--